यह एक सड़क है कई सारे बच्चे स्केटिंग बोर्ड और हेलमेट पहने हुए हैं।

यह एक मंदिर का दृश्य है ऊपर खुला आसमान है मंदिर के ऊपर एक ऑरेंज रंग का झंडा लगा है।

जमीन दिखाई दे रही है कई सारे थमने लगे हैं।

कुछ लोग सफेद बनियान और गुलाबी रंग का पजामा पहने हुए हैं।

दीवार पर सफेद और अलग रंग का पेंट है जमीन दिखाई दे रही है।

यह एक कार्यालय के अंदर का नजारा है।

लड़कियां डांस की प्रैक्टिस कर रही है ऊपर पंखा लगा है दीवार पर रंग बिरंगा पेंट है।

चारों तरफ से लोगों को जाने से रोकने के लिए लाल रंग की पट्टी लगी हुई है जमीन दिखाई दे रही है।

लोहे के शटर लगे हुए हैं दीवार पर सफेद पेंट है कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

सफेद रंग के सोफे रखे हुए हैं जमीन पर हरे रंग की कालीन बिछी है।

एक लकड़ी की कुर्सी पड़ी है ऊपर गुब्बारों से सजावट की गई है।

पीछे कई सारी झाड़ियां और हरे पत्ते नजर आ रहे हैं।